और ग्राउंड पे कुछ पिक्चर बनाया गया है।

अपना मास्क लगायें हुए है। आपरेशन थियेटर में जो जाते है--

गेस्ट रूम पेंटिंग लग रहा है पेंटिंग के बीच एक फ्रिज रखा हुआ है।

तिरंगा फहराया जा रहा है एक व्यक्ति घु उँ--

यह एक रेस्टुरेंट नजर आ रहा है बहोत सारी कुर्सियां पड़ी हुई हैं कुर्सी पे बहोत सारी बे--